हम इस फोटो में देख पा रहे हैं। यह फोटो हमें किसी स्कूल की लग रही है और यह यह एक ग्रुप की फोटो है।

रात का मोहोल बोहोत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है और यहाँ पर घासे भी बोहोत हरी-भरी है और यह खबसूरत फ़ोटो खींचा गया है | यहाँ पर फ्लावर पॉट भी लगा हुआ है।

हम इस फोटो में देख पा रहे है यहाँ पर एक ल-जवान लड़का खड़ा हुआ है जो कि सेल्फी ले रहा है।

और यहाँ पर बोहोत सारे बच्चे बैठे हुए हैं जो के कुछ क्राफ्ट बना रहे हैं। यह बच्चे बोहोत ही अच्छे तरीके से बना रहे हैं और यहाँ पर टीचर भी बोहोत अच्छे से गाड गाइड करते --